और दो आदमी खड़े हुए हैं एक नीचे है और एक पहाड़ पर ऊपर खड़ा हुआ है जो फोटो खींच रहा है।

और इसके इसमें बहोत बड़ा ग्राउंड है।

और ऊपर लाइट जल रही है नीचे टाइल लगी हुई है।

जो एक फोटो खैच रहा है फि बाहर से और दो अंदर आदमी है।